और यहां एक बोर्ड है अं ब्लै रेड शेड का और एक अं टेबल और कुर्सी भी है।

यह तो एक ऑफिस है। यहां तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिस जैसी है। यहां तो बोर्ड में गवर्नमेंट --

यहां तो दो बिल्डिंग्स है दो बिल्डिंग के बीच में एक ओपन प्लेस है वहां तो पौधा ज्यादा है।

और ब्लू कलर का दो बोर्ड हैं उसमें तो कुछ लिखा हुआ है और नीचे फ्लोर लाल रंग का--

ऊपर ब्लू कलर का और अरेंज कलर का सीलिंग भी अच्छा है दिखने में वहां तो ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है।

वॉल प्रोसेस भी है और यहां ग्लास का दोस्त भी है ऊपर से ना सब कुछ ग्लास ही दिखा र--

ये तो कुछ मस्जिद की प्लेस जैसी लग रहा है यहां ज्यादा लोग बैठा हुआ हैं कुछ प्रे कर रही है और यहां तो--

छोटा छोटा पौधा हैं और पेड़ हैं या पानी के लिए एक ट्यूब भी हैं।

ये तो एक दुकान है ये यहां की दुकान के बोर्ड यहां बोर्ड -- लाल रंग का लिखा हुआ है यहां एक आदमी बैठा हुआ है।

लेस पैकेट कुरकुरे सब कुछ ऐसा है यहां ड्रिंक का बॉटल्स भी ज्यादा है शीशे का।

और यहा छोटा पौधा भी है वो अमरुत का प पोड़ पेड़ जैसी है और वहां कुछ बिल्डिंग भी है उसके पास।

ये तो एक मंदिर की प्लेस जैसी है यहां ज्यादा औरतें पूजा पाठ कर रही हैं यहां तो ज्यादा लोग हैं।

बेड है वहां वह वायलेट कलर का है बेड और वायलेट कलर के कुर्सी भी है।

यहां तो पीला रंग का एक डस्टबिन भी दिखा रही है वहां तो कुछ स्टेज जैसी दिखा रही है और पीछे पेड़ भी ज्यादा दिखा रही --

-- अच्छा दिख रहा है उसका तो -- दंडी ग्रीन कलर का दिखा रही है।

ये सब लाल कलर का दीवार हैं और भी दिखा रही है सब कुछ--

ये तो एक बस स्टैंड जैसे हैं यहां पर ज्यादा औरतें हैं साड़ी पहन के हैं वो सब के--

पहना हैं और एक औरत व्हाइट कलर का हैं और वहाँ ऊपर पंखा दिखा रहीं हैं और वहाँ ब्लू कलर का डोर भीं दिखा रहीं हैं।